उन्हीं शेड के नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने पेंट शर्ट डाली हुई है।

यहां पर एक कलरफुल सी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत सारी भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं।

शीशे के ऊपर ही यहां पर एक घड़ी लगी हुई है घड़ी के पास ही कुछ इंडियन फ्लैग लगा हुआ है।

यहां पे कुछ बिल्डिंग्स भी हैं बिल्डिंग के नीचे कुछ पानी इकट्ठा हुआ हुआ है।